पीछे मे बहुत सारी कैरेट हैं जिस पर कुछ कागज बिछा कर सारे फलों को रखा गया है।

आगे में एक पुतला खड़ा किया गया है जो कि पीले कलर का है।

पीला कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर एराइवल्स लिखा हुआ है और उसमें एक हेलीकॉप्टर का छाप है।

पेड़ को ईंटो से कवर की।

इसमें इसका दरवाजा के ऊपर एंट्री गेट लिखा हुआ है कई सारे बोर्ड टंगे हुए हैं कई सारी बैनर लगे हुए हैं।

अंदर में एक काउंटर है जो कि लाल कलर का है उसके ऊपर एक प्रिंटर रखा हुआ है।

यहां पे मोती पन्ना केकरा हीरा सोना अन --

बहुत अच्छी लाइटिंग है ऊपर का सीलिंग सफेद कलर से रंगा गया है।

यह एक बेडरूम है जिस पर दो बाल शीत लगे हुयी है एक ब्लैक कलर का एक सफेद कलर का।

इसमें लड़की के फ्रेम का दीवाल में फिनीशिंग किया गया है।

फूल जोकि सफेद गुलाबी कलर का है।